ये जालियां लगी हुई दिखाई दे रही है घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।